दिखाई दे री है कुछ बहोत सारी मेडिसिनस टैबलेट --

बाथरूम में पानी दिखाई दे रहा है तलाई के आजू बाजू बोर--

तालाब के किनारे एक पौधा समझ में आ रहा है।

पहाड़ी के ऊपर बहोत ज्यादा पत्थर लगे हुए दिखाई दे रहे है हमे पानी में बहोत ज्यादा ग्रीन कलर के पौधे--